हवाई जहाज़ का पुरा फैन दिख रहा का एक कार खड़ी दिख रहा है पिलर में सफ़ेद-सफ़ेद का पुट्टी लगल--

ये माया मंदिर टाइप की दिख रहा है सामने में एक गाड़ी लगी है।

ये होटल है एक चार साथ खड़ा है एक सामने से मोटरसाइकिल आ रहा है।

सब जगह पीले पीले खिड़की दिख रहा है पेंट किया हुआ है।

ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है यहां सामने हरा हरा पौधे रखा हुआ है।

ये माला कई रंगों का बना हुआ है करीब बीस पच्चीस पीस दिख रहा है इसमें गुलाबी कलर है केसरिया कलर है नीला है हरा रंग का है कई काल कलर के इसमें माला टंगे हुए है।